पुलिस वाले दिख रहे हैं।

पीला कलर दिख रहा है।

मेन गेट दिख रहा है। मेन गेट पर ब्लैक कलर दिख रहा है।